दो बलूंस ब्लैक कलर के लगे हुए हैं इधर बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड के अंदर चार्जिंग लगा हुआ है।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

बैठे हैं एक मार के बैठे हैं और आगे काफी बंदे बैठे हैं इसने व्हाइट कलर की टोपी पहन रखी है अंकल ने।

यह नॉर्मल कोई मैरिज का घर है यहां पे दो गाड़ियां व्हाइट कलर की खड़ी है और एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है।

और ये वहां पे वॉशरूम वगैरा है वॉशरूम के सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है।

और इधर आगे सामने क्लासेज लिखा हुआ है।

बादल भी बहोत अच्छे है और पूरा हरा भरा ग्राउंड्स बना रखा है बहुत अच्छा ग्राउंड दिख रहा है यहां का --

एन_आर_आई अ आई_सि_आई आइसक्रीम वाले भैया की शॉप है यहां पे --

लिखा हुआ है और यहां पे हरे पेड़ भी है साइड में और ऊपर प्लांट भी लगे हुए है दोनों साइड --

छोटरिश न कुछ लिखा हुआ है और यहां पे साड़ियां है और लेडिस के--

यहां पे अं एक्टिव खड़ी है और एक टेंपू खड़ा है।

यहां पे गार्डन बना हुआ है गार्डन के अंदर ये बच्चों के लिए तीसल पट्टियां भी बनाई गई है और हरे पेड़ भी है चारों ओर।

पेड़ बीच में लगे हुए है बीच में पानी पानी भी है और चारों ओर हरे पेड़ लगा रखे हैं।

मिथला बुक सेंटर दुक ये दुकान और एक भैया--

और इसमें एक भैया भी खड़े हैं जो ब्लैक कलर का शर्ट है वाइट कलर की पैंट पहने हुए खड़े हैं पीछे --

ए_टी_एम है और आई_सी_आई_सी_आई बैंक भी है उसके सामने एक--